एक आदमी ने पीछे लाल और काला कलर का बैग लिया हुआ है।

यहां पे बहुत सारी तारें भी है यहां माइक भी है।

यह एक जगह है यहां पे बहुत सारी कार है लाइट है लोहे की पाइप है बहुत सारे मसीन हैं।

यह एक रोड का फोटो है यहां पे बहुत सारी क्रेन भी है यहां एक बिजली का तार भी है और बिजली का टावर भी है यहां छोटे-बड़े पेड़ भी हैं।

यह एक जगह का फोटो है यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है।

यहां घर भी हैं। यहां एक पेड़ भी नीचे गिरा हुआ है।

एटर है जिसका कलर ब्लू है कुर्सी का कलर रेड है।

यहां पे एक औरत नाच भी रही है।

व्हाइट कलर की लाइट भी ऊपर लगी हुई है यहां नीचे बहुत सारी कुर्सियां टेबुल भी है कुर्सियों का कलर ऑरेंज और ब्लैक है।

यहां पे एक शीशे का दरवाजा भी लगाया हुआ है।

नीचे टाइल्स भी बिछाया हुआ है यहां बगल में इलेक्ट्रिक बोर्ड्स भी हैं।

यह फोटो एक स्टोर रूम की है यहां पे बहुत सारे लोहे की पाइपें हैं।

पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके बाहर तार भी निकला हुआ है।

यह एक ग्राउंड का फोटो है यहां बगल में बहोत सारी बड़े बड़े पेड़ हैं यहां पर लोहे से बाउंड्री को घेरा गया है।

यहां पीछे तार भी है।